इस शिप को भी कॉर्नर से रस्सी बांधे हैं।

ये किचन का अंदर में एक ठो लाइट बल्ब व्हाइट कलर का जला के भी है।

ब्राइट कलर का घर का सामने में दीवाल में भी तीन ठो लाइट लाइट बल्ब पोल्स भी लगाके हैं।

यहाँ में वाइट कलर का दीवार लगाके भी है।

इसमें एक घर देख रहा है स्कूल जैसा।

ये रूम का अंदर में एक ठो बिस्तर है दो पिलो रख के हैं।

ये दुकान का अंदर में चावल बैग भी देख रहा है।

यहां पे तरह तरह का फ्लावर पॉट रखा हुआ है पिंक कलर का येलो ग्रीन --

ये एक दुकान का अंदर में तरह तरह का बहुत सामान रखा हुआ है।

ये नदी का सामने में बड़ा बड़ा पत्थर देख रहा है।

यह घर का आगे में एक ठो स्कूटी भी है राख के हैं।

ब्लू कलर पेंट करके एक ठो पोल्स दिखाई दे रहा है।

ये मंदिर का आगे में लाइट जला के दो ठो नजर आ रहा है।

ये होटल का अंदर में एक थू फ्लावर पॉट देख रहा है।

यहां में एक दुकान है लस्सी लिखके।

दुकान का ऊपर में रेड कलर जैसा फ्लैग लगाके भी टंगा के हैं।

एक पिक्चर में बहुत सारा घर देख रहा है।